बहोत सारा बैलून भी चिपकाया गया है।

यहां बच्चे लोग सुबह आके पढ़ाई लिखाई करते हैं।

और इस गार्डन में लोग एक सुबह सुबह एक्सरसाइज भी कर रहा है।

ये फोटो जिम की है जहां एक लड़का पुल अप्स कर रहा है।

उसकी बैक मसल्स स्ट्रांग और डिफाइन दिख रहा है।

बैकग्राउंड में मोटिवेशन कोड है डू नॉट वी सीट वर्क फॉर इट ।

कुछ बॉक्सेस पर टायल लिखा हुआ है जो शायद ब्रांड या सप्लायर का नाम है।

पॉपुलर ब्रांड जैसे ब्लेंडर फर्स्ट फ्लाइट और ओकन ब्लू भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक सुंदर और शांत एक्टिविटी एंड स्टाइल मोनार्की या गुंपा दिख रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर ट्रेडिशनल तिब्बतियन आर्ट और डिजाइन बना हुआ है जैसे कि ब्लू सिंबोल्स और वुडन बैलकॉनीज ।

नीचे एक शॉप है जिसका नाम वी_बी एंटरप्राइज है जो एम_आई सोलर अप्लायंस के ऑथराइज्ड सेंटर है।

दो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई है एक वाइट हैचबैक और एक वाइट एस_यू_वी ।

दुकान में अंदर एक काउंटर और कुछ लोग भी दिख रहा है।

ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसके बाहर एक वेलकम बोर्ड लिखा हुआ है।